यहाँ पे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग है एक आदमी खड़े हैं जो पीछे बैग टांगे हुए हैं।

यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड देख रहा है ये बहुत बड़ा ग्राउंड है पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

यहाँ जिम है यहाँ पे एक लड़के हैं और एक लड़की है।

पीछे एक आदमी साइकिल से आ रहा है।

और यहाँ पे काफी सारे वो--

अ बिल्डिंग के बाहर बाउंड्री लगी हुई है।

पीछे घर है यहाँ पे दोनों साइड में पेड़ है।

और भी बोतल कुछ रखे हुए हैं पीछे एक चेयर है।

यह एक दुकान की पिक है यहाँ पे एक आदमी शर्ट और पेंट पहन के खड़े हुए हैं।

बड़स है फेविकॉल है और अनेक प्रकार के सामान हैं।

और यहाँ पे पका हुआ केला रखा हुआ है बंधागोभी है यहाँ पे एक भैया खड़े हुए है।

और भी उधर आसमान दिख रहा है और आगे घर-उर दिख रहा है।

और इधर कु कुत्ते के कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं।

कोई भी देह में कपड़ा नहीं पहरे हुए हैं और आगे एक आसन लगा हुआ है जो बाबा मेन हैं इधर एक शंख का फोटो भी है।

और यहाँ पे ऊपर फोटो काफी सारे लगाए गए हैं उसमें कुछ लिखा भी है और आदमी का फोटो भी है टेबल के ऊपर बोटल भी रखा हुआ है।

एफ_ टी_ लिखा दिख रहा है ब्रांड ऑफ टी_ आर_ ।

ऊपर में बॉर्डर में दीवार में पीला कलर का है।

बस लाल है वाइट है उस पे नंबर लिखा हुआ है।

और कुछ पैर नीचे वाइट कलर से और हल्का ऊपर नीला कलर से पेंट किया हुआ है।

और इसमें कसैली का पेड़ भी दिख रहा है।

यहाँ लकड़ी पर कपड़ा पसारे हुए हैं।

और एक लड़की का माथा इधर दिख रहा है ऊपर वाइट लाइट जल रहे हैं।

किसी डांस क्लास के पिक्चर दिख रहा है शीशा लगा हुआ है आगे।

और पेड़ बहुत अच्छे-अच्छे दिख रहे हैं हरे।

और ऊपर घर पे रिंग बांध रहे हैं यहाँ बहुत सारा लोहा दिख रहा है।

खेत में पानी पटाने वाला पाइप भी दिख रहा है और यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़ भी हैं।

आगे मकान भी रंग-बिरंग के बहुत अच्छे-अच्छे दिख रहे हैं।

कोई फंशन है यहाँ पे दो लड़के बैठे हुए हैं।

दोनों लड़के एक दूस एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखकर बैठे हुए हैं।

यहाँ पे मछली की दुकान है बहुत सारे मछली रखी हुई है।

यहाँ कोई पुराना किला दिख रहा है।

नीचे फर्स भी किया गया है।

और यहाँ पे छोटे झुक्गी दिख रहे हैं।

एक बिल्डिंग पे काफी सारे बोर्ड ऊपर बोर्ड लगे--

और एक स्कैनर भी है यहाँ पे लाल डिब्बे नीले डिब्बे गुलाबी डिब्बे--

और यहाँ पे खाने-पीने के सामान बहुत बिक रहा है।